यहाँ सामने में वाइट कलर का रूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ --

सामने में जिम सा दिखाई दे रहा है बहोत --

मूर्ति बना हुआ है बैल जो है पिंक और हल्का सा --

यहां पे बिजली विभाग जैसे दिखाई दे रहा है यहां पे बिजली जैसा --

यहाँ सामने में एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है कलर में है और यहाँ पे एक लम्बा-सा दिखाई दे रहा हैं जो लोहा का --

इनके पास में एक पेड़ दिखाई दे रहा है यहां छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और ये लोग व्हाइट - व्हाइट कलर की कैप भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे एक आदमी ब्लैक कलर का छाता लिए हुआ --

और इधर में साइड में बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे एक यहाँ पे एक बड़ा-बड़ा पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है। कुछ-कुछ छोटे भी है यहाँ पे साइड में जहाँ एक--

यहाँ पे एक फील्ड दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सा है और यहाँ पे एक चैम्प दिखाई दे रहे है। एक लड़का --

और पीछे में पूरा अँधेरा-अँधेरा से दिखाई दे रहा है।